जहां पर शीशे के--

पर गुब्बारे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे बिल्डिंग बनी हुई--

यह एक पारक में--

दिखाई दे रहा है।

दुल्हा स्टेज पर दुल्हन के इंतजार में--

खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

तथा वे यहां पर--

एक पुलिस वाला यहां दिखाई दे --

शीशे लगे हुए हैं वह तस्वीर में--

एम_डी_यू रोहतक के सचिवालय को तस्वीर में--

है जहां बाहर आप--

सुपरमार्ट में आप को--

यहां पे बहुत अच्छी डिस्काउंट पर आपको मिलता--